फोटो में किसी रूम का व्यू दिखाया गया है।

उसके राइट साइड बहोत से ईट के टुकड़े रखे हुए हैं।

लेफ्ट साइड एक नदी भी दिख रही है।

सामने का घर लाल रंग का है और उसके ऊपर एक मिठुन का स्ट्रक्चर बना हुआ है।

एंट्रेंस के सामने हर रंग का परदा भी लगा हुआ है।

इस घर के ऊपर सक्यामुनि विहार लिखा हुआ है।

ब्लू रंग की टंकी पड़ी डंफर गाड़ी खड़ी है।